एक आदमी मुझे दिखाई दे रहे है यहाँ लोहे के एंगल लगे है लोहे के पाइप दिखाई दे रहे है सामने एक बोर्ड लगा हुआ हो वो दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक ये होटल जैसा दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट और यहाँ पर मुझे कुछ लाइटें जल रहे है वो दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक अ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है बाहर कुछ चेयर रखी रेड कलर की वो दिकहि दे रही है टेबल दिखाई दे रही है और बाहर लाइटे जल रही वो दिखाई दे रहा है।

और यहाँ आजु-बाजू में मुझे कुछ घर बने वो दिखाई दे रहे है यहाँ स्टूल रखे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर --

एक गाड़ी खड़ी है बाहर वो दिखाई दे रही है पेड़-पौधे लगे वो दिखाई दे रहे हैं लाइट के खंभे मुझे दिखाई दे रहे हैं तार दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है मुझे--

और यहाँ पर एक टी_वी लगा है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोर्ड लगे है यह पोस्टर वो दिखाई दे रहे है और यहाँ पर सामने सामान रखे है वो दिखाई--

और बगल में एक और घर बने है वो दिखाई दे रहे है दूर एक और घर बना है वहां पर मुझे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है ऊपर मुझे आसमान दिखाई दे रहा है और यह दीवार का रंग मुझे पर्पल दि --

इस इमेज में मुझे बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर है जो पर्पल कलर है और यहाँ ऊपर बोर्ड पेंट से कुछ लिखा हुआ वो दिखाई दे रही है।